ये सारी मस्जिद दिख रही है जो की सफ़ेद और हरे कलर की है उसमें काफी सारी खिड़कियाँ दिख रही हैं ऊपर एक टंकी रखी है जो काले रंग की है सामने काफी बड़े-बड़े पेड़ लगे हैं जो हरे कलर के पत्ते हैं उपर आसमान दिख रहा है जो कि सफ़ेद रंग का है।

आस-पास काफी सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं कुछ हरे कलर के पत्ते नीचे काफी सारे प चट्टानें दिख रही है कुछ पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं ऊपर आसमान है जो कि सफेद रंग का है।